बाहर बहुत बड़ा गेट है उसमें लिखा हुआ है सूचना भवन।

इसमें एक प्राकृतिक का दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक लंबा सा सीढ़ी गया है।

गन्ने में उसमें गमछा बना हुआ है पीला कलर रेड कलर में।

बहुत सारे यज्ञ करने वाला मंडप है रेड कलर पीला कलर वाइट कलर ।

इसमें एक मनुष्य है जो की फौजी का ड्रेस में है जो की योगा कर रहा है।

पंखा टंगा हुआ है बगल में व्हाइट कलर का बल्ब जल रहा है।

बहुत सारे दुकानों के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है एक पोस्टर में अग्रवाल।

नीचे बहुत सारे मनुष्य चल रहे हैं।

इसमें बहुत सारे घरों का दृश्य दिखाया गया है इसमें एक घर व्हाइट कलर में है।

एक बड़ा सा पोस्टर है नीचे टेंपू खड़ा है ठेला है कार है बाइक है।

कुछ मनुष्य बैठे हुए हैं कुछ मनुष्य खड़े हैं।

बड़ा सा रेड कलर में मशीन का पाट रखा हुआ है सेलो टेप है स्क्रूड्राइवर है।

लोहे के गेट है दीवारों में पोस्टर लगा हुआ जहां पे लिखा हुआ यस टी एक्सवियर्स स्कूल ।

बगल में लोहे जैसा घेरा हुआ है और झूला भी टंगा हुआ है ऊपर लाइटें जल रही है रंग बिरंगी।

बगल में बहुत बड़ा बाउंड्री जैसा है।

एक ब्लैक कलर की कार है बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है।

उसमे ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ उसमें बहुत सारे पोस्टर चिपका हुआ है।

जिसकी दीवारों का कलर व्हाइट है उस पे बलून लगा हुआ है।

नीचे कारपेट बिछा हुआ हरे कलर में रेड कलर में।

दीवारें हैं उसके सफेद कलर की खिड़कियां है पंखे टंगे हुए हैं।

इसमें एक मनुष्य खड़ा है सफेद कलर का कुर्ता पहने कंधे पर बैग टंगे हुए और ऊपर टोपी पहने हुए--

इसमें एक बहुत बड़े पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है।

बगल मैं एक औरत खड़ी है बगल में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं।

बगल में बहुत सारे पेड़ हैं फिर तारे हैं दिवालो के ऊपर लाइटें टंगी हुई है।

नहीं जैसी जालियां है दीवारें सफेद कलर की है उसमें लाइटें टंकी हुई है।

बगल में दीवार है उसमें भी एस_बी_आई ए_टी_एम लिखा हुआ है।

बगल में एक लोहे का टीना जैसा है।

बगल में मनुष्य खड़ा है बहुत सारी डाली रखी हुई है।

इसमें भी फूल रखा हुआ है पिंक कलर का दीवार है।

इसमें बहुत बड़े घर का दृश्य दिखाया गया है जिसकी दीवारों पर कलर है व्हाइट उसमें बहुत सारी खिड़कियां है गेट है।

उसमें और एक बाइक और कार का तस्वीर है।

बगल में एक मनुष्य खड़ा है ब्लू कलर का टी शर्ट पहने बगल में बहुत सारी डालियाँ है डालियों के ऊपर सब्जियां रखी हुई हैं।

देसी टमाटर है गोभी है कद्दू है मिर्ची है।

ऊपर लिखा हुआ है बाल दाढ़ी सपा एंड सैलू--

बहुत सारी कुर्सियां हैं ब्लैक कलर में।

टेबल है के कलर में।